देख सकते हैं यहां काफी सारे गेट लगे हुए हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारी तस्वीरें--

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक वेयरहाउस बना है।

जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

जैसे की आप सभी देख सकते हैं यहां काफी बड़ा ग्राउंड हैं।

जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहां --

जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यह एक क्लासरूम है।

जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहां काफी बच्चे बैठे हैं।

जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहां बहुत व्यक्ति है।